और एक ब्लैक कुर्सी दिखाई दे रही है।

यहां पर कितने सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर एक गाड़ी और इस्कूटर भी दिखाई दे रही है।

यहां पर कितनी सारे जेंस और लेडिज दिखाई दे रही हैं।

सामने एक खाली मैदान दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारी ब्लू कलर की लड़ी लगाई गई है।

यहां पर तीन जेंट्स एक बच्चा दिखाई दे रहा है।

और ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

जिस पर श्री हिंगलाज बुक डिपो लिखा हुआ है।

और साइड में बैट और कैरम बोर्ड रखे हुए है।

और लैपटॉप की स्क्रीन पर रियलमी दिखाई दे रहा है।

ये एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

साइड में एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर एक जेंट्स गाड़ी को ठीक कर रहा है।

और यहां पर डेकोरेट किया गया है और यहां पर पूजा का सामान भी रखा हुआ है।

और यहां पर इतने सारे पेड़ पौधे दिख रही है।

जिसपर बैंक आफ बडौदा लिखा हुआ है और साइड में एक गेट लगा हुआ है।

और मशीन पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर शुभ लाभ लिखा हुआ है।

और साइड में कितनी सारी रद्दी रखी हुई है।

और यहां पर एक पंखा चल रहा है दीवार पर एक घड़ी लगी हुई है।

और सामने कितने घर दिखाई दे रही है।

जिस पर एक लकड़ी का सूटकेस खुला रखा है और पीछे बाइके दिखाई दे रही है।

और इसके पीछे एक घर दिखाई दे रहा है।